एके वो च से खड़े दिखाई दे रहे हैएक से खड़े दिख रहे है उसमे कुछ लोग बेठे दिखाई दे रहे है।

यह मुझे कोई डंडे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ मुझे ईंट रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ मुझे पेट्रोल की टंकी दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है और पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे है और यहाँ पे एक व्यक्ति ने हाँथ मे थैला ले रखा है और यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं

यहां भी बहुत सारी मुझे चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है और यहां रेल रेल जैसा दिखाई दे रहा है।